जिन्हें मशीन से सुधारना सिखाया जा रहा है।

जोकि येलो और वाइट कलर की है।

एक शॉप दिख रही है जहाँ पर बहोत सारी चिप्स के पैकेट टंगे हुए हैं बहोत सारी कुर्सियाँ रखी हुई हैं।